यहाँ पे कोई है नदी का नजारा यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो आगे तरफ हरे-भरे पेड़-पौधे है जो यहाँ पे आके--

सड़क है जो एक सड़क गया है जो आगे तरफ में भी मुझे देखने को मिल रहे है जो एक आदमी रास्ते से जा रहे है।

और लाइट भी जल रही है जैसी लग रही है रात के समय में फोटो को क्लिक किए हैं बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा हैं।